कांच का दरवाजा है और अंदर ए_टी_एम है।

और यहां पे बहुत सारे लकड़ी रखे हुए है।

और झरना बहुत तेज बह रहा हैं।

और नीचे जो जमीन है उसे सीमेंटेड कर रखा है।

और चार पांच लड़के दिखाई दे रहे हैं दो पोलिस ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं।

और कोने में कुछ सामान रखे हुए हैं और--

ड्रेसिंग टेबल दिखाई दे रहे हैं देखने से तो ये कोई कारपेंटर का शॉप लग रहा है।

इस फोटो में एक फैमली रेस्टोरेंट दिख रहा है जिसका नाम होटल पार्क फैमली रेस्टोरेंट है।

और सीलिंग का कलर है ग्रीन और पिंक --